घास दुहा में एक बकरी का बच्चा बैठा है बकरी के बच्चे का कलर काला या सफेद कलर का बकरी का बच्चा है।

यहा पर मुझे एक बगीचा दिखाई दे रहा है बगीचे के अंदर कुछ --

बुलडोजेर से काम करवा रहे हैं बिलडोजेर कुछ गड्डा खोद रही है खास --

चाबी के गुच्छे लगाने में मिल रहे है बॉडी लोशन रखा है।

सेव की की नमकीन की की पन्नी दिखाई दे रही है टॉफी यहां क्रीम टंग रही है मैगी टंग रही है।